भट्टाह बाजार पूर्णिया लिखा हुआ है रोड पे टोटो चल रहा है मोटर साइकिल भी चल रहा --

ये बस बहुत अच्छा है बस में घूम ने मे बहुत अच्छा लगता है।

रंग-बिरंगी का चॉकलेट है शैंपू है मीट मसाला है गरम मसाला है बिस्कुट है।

इसमें बहुत सारा मिठाई रखा हुआ हैं लड्डू भी है लिट्टी है।

खिड़की भी बहुत अच्छे से बनाए गए है यहां पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं।

हरा-हरा पेड़-पौधा दिख रहा है ।